पिलर दिखाई पड़ रहा है जो कि व्हाइट कलर के दिख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। साइड में एक शटर रेड कलर का लगा हुआ है। यहाँ पे सामने एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

गेट दिखाई पड़ रहा है जो कि ऑरेंज कलर का है यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है यहाँ दीवाल पर एक बैनर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे एक बिजली का खंबा लगा हुआ है।

जो कि ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा है। अंदर साइड कुछ कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं। बगल में एक शटर जैसा दिख रहा है। यहाँ पे सामने एक सीढ़ी रखी हुई है।

ये पीछे छत भी व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रही। यहाँ पर पूरा रेड कलर का दिख रहा है। यहाँ जमीन ब्राउन और ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है।

बोहोत सारे पेड़ ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे एक बिजली का खंभा भी दिखाई पड़ रहा है। ऊपर आसमान का कलर व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ सामने एक लेडी आती हुई दिखाई पड़ रही है| यहाँ नीचे जमीन ग्रीन कलर और ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है पीछे बहुत सारे --

यह बहुत सुंदर चित्र है।